ये एक रेटोरेंट का पिक्चर है जहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर किया गया है। ये हॉट कॉफी है। इसमें दो स्पून है दो कप में कॉफी है और यहाँ पे टिसु पेपर भी है और कॉफी बनाने के लिए रखा हुआ है। एक चाभी भी रखा हुआ है यहाँ पे।

और यह दिन का समय है ।

अच्छा लग रहा है देखने में।

ये एक लड़की है जो की --

बाल काट रहा है। दो बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं कटवाने के लिए। एक कटवा रहें हैं और एक कटवाने के लिए बैठे हुए हैं।